और यहां पर नीचे जो बेंचस पर लाल कलर की चटाई पड़ी हुई है।

और एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है जो सफेद कलर का जैकेट पहने हुए हैं और टोपा लगाए हुए हैं।

और साइड में हरे रंग की सफेद गोभी भी दिखाई पड़ रही है।

और बड़ी मिट्टी की चट्टान लगी हुई है जिस पे हरे कलर की घास दिखाई पड़ रही है।

और यहां पर ईंट भी पड़ी हुई हैं जो छोटी छोटी हैं सारी।

से का गेट लगा हुआ है और मेज पड़ी हुई है।

दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है इसपे लिखा हुआ है जिंदगी बहोत हसीन है खुशी से जिलो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आदमी हाथ जोड़े हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे गमले हैं जो लाल और गुलाबी और नीले कलर के हैं और--

यहां पर दो ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं जो लाल कलर के हैं।

यहां पर एक पाइप है जिसमें पर्दे टंगे हुए हैं जो अलग अलग कलर के पर्दे हैं।

उसके ऊपर एक पाइप है उसमें भी पर्दे टंगे हुए हैं जिसमें उसमें भी अलग अलग कलर के हैं।

और उसके अंदर सफेद कलर के कागज भी पड़े हुए हैं।

और सामने कुछ बड़ा पंडाल बना हुआ है उसके आदमी आदमी उसके ऊपर भी हैं।

साइड में पाइप भी लगी है जो सफेद और लाल कलर की है।

एक सामने जो किसी चीज की दुकान है उसके दुकान के अंदर पंखा भी लगा हुआ है।

साइड में एक सफे सफेद कलर का डिब्बा रखा हुआ जो बड़ा है।

उधर साइड में कुछ सूखे हुए पेड़ हैं कुछ हरे हुए पेड़ हैं।

यहां पर एक ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर भी पेड़ है बाहर भी पेड़ है।

और साइड में दो तीन दुकान भी दिखाई पड़ रही हैं जो बंद हैं दुकान उसके सामने ग्राउंड के चट्टान भी लगे हुए जो मिट्टी की है।

जो ग्राउंड के आस पास दीवार है ओ लाल लाल कलर की है और पीले कलर की--

और यहां पर बहोत बड़े बड़े पत्थल भी पड़े हुए है।

यहां पर बड़े पेड़ हैं और छोटे भी पेड़ हैं।

लाल पीली और बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं इस--